टाओर है| इसके अगल बगल में काफी पेड़ पौधे हैं और बहोत ही सुन्दर जगह है| यहाँ के हरयाली भी काफी सुन्दर है और दो-तीन --